जहां पे मुझे बहोत सारे समान टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पे अलमारी में --

नीचे में कुछ लोगों को पूजा--

सामने मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

सामने मै एक बड़ा सा हॉल देख पा रही हूं।

सामने मैं एक टेबल देख पा रही हूं।

साइड में कुछ फाइल रखे हैं।